पत्तिया रखी हुई है रोड दिखाई दे रहा है खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे है बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है बसे दिखाई दे रही है पेड़ पौधे झाड़ीया रोड वगैरा दिखाई दे रही है एम्बुलेंस बस रखी है कार रखी है।

ये यहा व्हाइट कलर के टाइल्स लगे है इस क्षेत्र मे व्हाइट कलर के टाइल्स दिखाई दे रहे है और एक बोर्ड पे एंट्री बोर्ड लिखा हुआ है घर में टाइल्स दिखाई ले टाइल्स में जो काच लगे हुए है काच में सा --